यह एक खेत है जिसमें एक दो पेड़ हैं और पेड़ के नीचे धान का खेती है।

यहां पे कुछ प्रोग्राम होने वाला हैं ज ऐज फोर शादी हैं का प्रोग्राम हैं टेड बहुत अच्छा लगाया गया हैं।

यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है जो की वाइट कलर और येल्लो कलर का है बहुत सा सुन्दर जगह पेड़ लग रहा है।